नीचे नीले रंग के डब्बे में प्याज रखा हुआ है।

बगल में ढेर सारी चॉकलेट रखी है शीशे के अंदर।

और एक बिल्डिंग के आगे एक अस्कूटी भी खड़ी है जो उजले रंग की है।

और नीचे में घास भी लगाए हुए दिख रहे हैं।

उसके बगल में एक झोला भी रखा हुआ है।

और उस इस कमरे में ए_सी भी लगाई हुई है छोटा सा पंखा भी लगा हुआ है ।

बगल में बांस के सहारे करकट लगाया गया है।

उसमें अच्छे अच्छे पत्थर रखे हुए है रंग बिरंगे।

जिसमें मेडिकल आई_आई_टी जेई फाउंडेशन लिखा हुआ है।

और एक नीले रंग में किसी चीज का टैंक है।

और इसकी दिवाले पीले रंग के और भूरे रंग की है।

ये तस्वीर एक फ़ु खुले हुए प्रकृति की है जिसमें पेड़े पौधे दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक खुले मैदान की है।

दीवालों में तीन पंखे लगे हुए हैं।

इसके ढेर सारे चक्के भी दिख रहे हैं।

यह तस्वीर मछलियों की है जो मरी हुई है।

ये तस्वीर खुले मैदान की है।

यह तस्वीर मॉल के बाहर की है।

जहां पे एक काउंटर जैसा बना हुआ है।

जहां पे एक नीले कलर के टी शर्ट में एक व्यक्ति बैठा है।

यह तस्वीर एक कमरे की है जहां पे दो कुर्सियां रखी गई है।

और डेस्क पे एक बोतल भी रखा गया है।

ये बाहर में ढेर सारी गाड़ियां खड़ी की गई है।

और उसके पीछे पत्थर है और उसके आगे में फूल लटक रहा है।